इस तस्वीर में एक स्कूल दिखाई दे रहा है।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

जिसके ऊपर एक पुल बना हुआ दिखाई दे रहा है।

जिसके बाहर दो बड़े बड़े गमले रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।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

बराबर में मुंडेर दिखाई दे रही है।